एक लाइब्रेंडस की है जिसके अंदर बहुत सारी सिटे रखी हुई दिखाई हैं सामने एक सफेद पर्दा दिखाई दे रहा हैं और कुछ कुर्सियां--

ये एक के मंदिर का फोटो है जिसे पहाड़ों के अंदर मंदिर है कुछ व्यक्ति इसकी पूजा करने आए हैं सामने एक व्यक्ति फोटो ले रहा है।